क लग रहा है जहां पे बीच में फुटपाथ बनाया हुआ है और बड़े बड़े घने घने पेड़ भी हैं हरे भरे।

अंदर हरे भरे पेड़ भी पीछे नजर आ रहे हैं।

और यहां पे साड़ियां न साड़ियां नजर आ रही है और कुछ ज्वेलरी नजर आ रही है।